रखे हुए हैं कुछ ट्रॉली में आदमी ले जा रहे हैं समान बहोत सारे एल_ई_डी बल्ब है कैमरा है फैन

और बहोत सारे पेंसिल है ईरैसर है रबर है कटर है सर्पनर है फेविकोल है कुछ बहोत सारे स्माइली सा स्टीकर है र-अ पेंटिंग

और एक पत्तियां तोड़ रहे हैं और मिर्च तोड़ रहे हैं जो चेक कलर में शर्ट पहने हुए हैं दो आदमी एक लेडिज है और जैंट्स है जो इसमें टोट अ--तोड़के डाल रहे हैं

यहाँ पे एक गौतम बुध का मूर्ति है जो आसीरवाद दे रहे हैं सबको उनके ऊपर एक कपड़ा रेड कलर का लिपटा हुआ है कुछ फूल हैं

और कट पीस सेण्टर दुकान का नाम है हैरान दुकान का नाम है ऊपर में कुछ बकेट लटके हुवे है कुछ साड़िया लटकी हुव.

यहां पर एक लदिस्स है। लदिस्स के बाल में बहुत क्लिप है। छै क्लिप है। छै अट क्लिप है। और वह ऑरेंज-कलर के क्लिप है। शायद सलोन में गई हुई है। अपना बाल को--

एक अंदर गुफा है। जो पठार से बना हुआ है। बड़ी- बड़ी चट्टान है।